यहाँ पर ऊपर की ओर बादल बहुत सारे सुंदर--

सैलून दिख रहा है जिसमें केजीएफ के हीरो हीरो की कफ फोटो दिख रहा है।

क्योंकि यहाँ एक पहाड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ एक बहुत ही बड़े घने जंगल का नजारा देख रहा दिख रहा है।